पीछे तरफ बहुत सारे पेड़ बी लगे हुए हैं और पूरा अंधयारा छाया हुआ हैं --

जैसा कि मैं देख रही हूँ सुबह का वक्‍त है ये बहुत बड़ी सी मंदिर है और इस मंदिर में दो व्यक --

पेड़ घिरे हुए हैं बम्बू से घिरे हुए हैं और साइड में एक टीना से घर घिरा हुआ है और इस जंगल में--

पाँच व्यक्ति खड़े है और एक जो है वो पुलिस है दो ए_टी_एम मशीन रखे हुए है एक ब्लू कलर का डस्टबिन है ए_टी_एम के अंदर दो एसिया लगी हुई है --

ज्यादातर नेरोलाइक जो है वो रेड कलर की है और वाइट एंड ब्‍लू में जो रखा हुआ है वो फेविकोल है।

नजारे पेश किए हैं और ये पेपर में बहुत खूबसूरत से कलरफुल पेपर्स से एनिमल्स के चित्र बनाए गए हैं --

बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके कैट डॉग डक एलीफेंट बने हुए है।

टेंट की तरह घेरे हुए है बैंड्स लगे हैं टेबल चेयर्स लगे हुए हैं जैसे रेस्टोरेंट में लगे रहते हैं।

पिंक कलर का और येलो कलर का कपड़ों से बैम्बूस को यह लोग कवर किए हैं ब्यूटीफुल से और --

फूड एंड फेयर जहां पर बैनर पे लिखा हुआ हैं उसके ऊँचे हमें भारत की --

जैसा कि मैं देख रही हूं ये एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट बाहर की तरफ चार लाल--

पीछे एक तरफ एक बैनर है जहां जापान की फोटो लगी हुई है और कुछ डिशेस के भी पिक्चर लगे हुए हैं --

और ये रेड कलर का कभर्ड लगा हुआ है सारे बुक्स के और सारे फाइल्स के।

जैसा कि मैं देख रही हूं कि यह एक शॉप है और इस शॉप पर ज्यादातर आलू प्याज लहसुन अदरक आटा मिल रहा है --

और ये ढाबा छोटा सा हैं और पीछे की तरफ कुछ भोजन के सामान रखे हुए हैं --

ये लोग कुछ पेड़ से कुछ तोड़ रहे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा रखा हुआ है और ये मिट्टियाँ और पत्ते सिर्फ दिख रहे हैं यहाँ पर।

और एक ही लेडीस हैं यहाँ पर और बाकी सब जेंट्स बैठे हैं और पीछे की तरफ --

जैसा की मैं देख रही हूँ ये एक करीमनगर डायरी शॉप है और यहां पर बहुत सारे डायरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि दही --

मिल्क बटर चीज बहुत सारे यहां प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर प्योर मिल्क और दूध यहां टोन मिल्क --

जैसा कि मैं देख रही हूं ये एक क कॉन्‍सेट है एक परफोमेन्‍स है स्‍कूल का और इस स्‍कूल का नाम है बी_डी बल्‍ड स्‍कूल ।

और यह स्कूल के सारे बच्चे हैं परफार्म कर रहे हैं स्टेज में भारत के विषय में।

समान मिल रहे हैं जैसे कि इद्रुलेखा तेल मिल रहे है यहां पर सेसा तेल मिल रहे हैं और फिर जा के --

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे हरे और एक मंदिर है पीछे की तरफ जहां तीन चार बिल्डिंगे दिख रही है उसके --

ब्राउन लड़का है पीछे की तरफ कर्टन्‍स लगे हुए हैं फैंस लगे हुए हैं ग्रीन लड़की खड़ी--

जैसे कि मैं देख रही हूं ये बहोत बड़ी सी लेख ल नजर आ रही है।

जैसा की मैं देख रही हूँ ये एक डॉक्टर का चैम्बर हैं ब्लू कलर --

और यहां पर कुछ पिक्चर्स लगे हैं दिवार पे ऑनलाइन सिस्टम के और टेबल --

और यहां पेसेंट्स अपने इलाज करने के लिए आते हैं।

हम्म ऊपर की तरफ बैंक का बोर्ड लगा हुआ है नीचे की तरफ टाटा मोटर्स रखें हुए हैं और --

शॉप के बाहर लैंप अह लाइट जो होता है वो रखा हुआ है।

जैसा कि मैं देख रही हूं रात का वक्‍त है अंधियारा है सारी बिल्डिंग भी हल्‍की-हल्‍की दिख रही है पेड़ --

घर दिख रहे हैं और बिल्डिंग्स भी नजर आ रही--

टेंपू लगी हुई है ब्लू कलर की कुछ सामान रखे हुए है टूल्स के ऊपर।

चेयर्स है येलो कलर की टेबल्स रखी हुई है टेबल्स में वॉटर बॉटल है जो एम्टी है खाली है और इस होटल में एक --

एक टी_वी लगा हुआ है पासी में उसके फ्रिज है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स है एंड कोल्ड वाटर्स भी है भगवान की मूर्ति--